टंकी भी रखे हुए हैं। यह दुकान के बगल में जूते-चप्पल की भी दुकान हैं यहाँ पर --

यह चर्च है यह चर्च में ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं ।

एवं वैन होंगी यह स्कूल में बहुत चीज पढ़ने लिखने की सुविधा दी गई है।